इस तस्वीर में बिरयानी दिख रही है बिरयानी के पास एक गिलास रखा हुआ है जो कि उल्टा है।

इस चित्र में एक मूर्ति दिख रही है मूर्ति में कृष्ण और राधा बने हुए है उनके पीछे एक पक्षी भी बैठा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं एक बच्चा मंच पर कला प्रदर्शन कर रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो किसी स्कूल में अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे पौधे दिख रहे है पौधे के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में उम्म एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है। जिस --

ये इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही हे नदी किनारे बहोत सारे लोग पूजा कर रहें हें।

ये चित्र एक नाइ की दुकान का है जिसमें नाई एक आदमी की दाढ़ी बना रहा है।

इस तस्वीर में पानी भरा दिखाई दे रहा है पानी के बीच पत्थर नजर आ रहे हैं।

दूसरे किनारे पर बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं उस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

उसके पास छोटी और बड़ी दोनों तरह की मछलियां है।